हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की यहाँ हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है। रात का समय है।

ऊपर रात का समय है नीचे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

प सामने चारों तरफ उम्म कुर्सियां लगी हुई हैं जिनका कलर लाल है। लाल लाइट दिखाई दे रही है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहां पर हमें एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

हमारे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बड़ा मैंदान दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ टेंट लगा हुआ है टेंट का कलर फिरोजी और सफ़ेद है और ऊपर खुला आसमान है और ऊपर --

और कुछ न घूमने-फिरने का कच्चा मे --

और बोहोत सजावट की गई है। सामने मैदान है जिसमें बहोत सारे ऐं में --

वह सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है बोहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है महिलाऐं --

पहना हुआ और एक अं महिला दिखाई दे रही है जिन्होंने बैग नी नीचे रखा है और क्रीम कलर की टी-शर्ट पहनी है।

जोकि हरा कथई सफेद और लाल कलर की और बहौत सारे कपड़े जमे हुए दिखाई दे रहे --

जोकि एकदम कोज़ी ऐ लिखा हुआ है जो बनियान का उम्म ऐड कर रहा है।

और साइड में एक और बैनर लगा हुआ है जिसमें श्याम पैलेस सिनेमा फुल्ली एयर कंडिशन्ड लिखा है।

और गुलाबी और सफेद ये चारों तरफ फूल के बुके लगे हुए हैं। रंग-बिरंगे फूलों के --

नीचे ह लाल कलर की नेट बिछी हुई है और कुछ --